दिख रही हैं आजू बाजू में कुछ पेड़ भी लगे हुएं हैं।

वहां पर कुछ गाड़ियां भी पार्क की हुई दिख रही है।

यह बहोत ही सुंदर लग रही है और बहोत सुंदर तरीके से सजाई गई है।

बहोत ही सुंदर स्टेज सजा हुआ दिख रहा है।